पेंड पौधे भी दिखाई दे रहे हैं जो सुंदर हैं।

है और इसमें पानी बोतल भी दिखाई दे रहा है और फूड टाइम फूड टेस्ट ऐसा लिखा हुआ है इसमें --

अ बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है और साथ में ऊपर में लाइट भी लगा है।

आधार कार्ड भी लिखा है व साथ मे एक व्यक्ति है और साथ मे लैपटॉप भी पकड़ा है जिसमें वह काम कर रहा है और इस बैंक में हम खाता खुलवाने के लिए और पैसे निकालने के लिए आते है।

दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा गया है हैप्पी चिल्ड्रन डे जिसमें बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे है और बच्चे भी कार्टून के रूप में दिखाई दे रहे है जो अच्छे है।

पत्थर का मूर्ति है जिसमें लिखा है सौर द्वारपाल काल नौवीं दसवीं सदी ईसवी और उसके पीछे पेड़ दिखाई दे रहा है और साथ में एक घर।

बनाया जाता है और उसका अनेक पार्ट जो धरती पर रखा है और इसमें खिड़की दिखाई दे रहा है साथ में ऊपर पंखा है और इसमें बाय टू बाय थ्री बाय फॉर लिखा है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसका एक पैर को ऊपर किया है और उसको एक व्यक्ति--

यह जंगल है इसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं साथ में मकान भी है और इसमें --